मस्जिद दिखाई दे रही है इसमें स-सफ़ेद कलर पुता हुआ है और बाजु में सूर्य का प्रकाश दिखाई कहीं बिजली का खंभा लगा हुआ है उसमे तार दिखाई दे रहा है बाजू में एक का गेट दिखाई दे रहा है और --

इसके बगल में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो दो-तीन मंजिल है उसमे एक शटर लगी हुई है वो पिंक कलर की है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

सफ़ेद कलर का पुता हुआ नजर आ रहा है और बीच में खुला मैदान है इसके उस साइड सिटी दिखाई दे रही है कुछ मकान बने हुए सामने दिखाई दे रहे --

यहाँ एक बोर्ड दिखाई दे रहा है भारत सरकार वित्त मंत्रायले लिखा हुआ है आ है बोर्ड लाल कलर का है पेंट है इसके पीछे एक विंडो है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है अति सुन्दर नजारा है ऊपर आकास दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

उसमे आदमी खरीद रहे है इसके बाजु एक पेड़ लगा हुआ है उस पेड़ में टायर दिखाई दे रहे है टायर टंगे हुए है।

एक झूला का नजारा है इसमें पाइप लगी हुई है पीले कलर की पुते हुए है पूल है सितारे जैसा लग रहा है अच्छा कलर दिखाई दे रहा है।

लोहे का गेट है सामने एक खंभा लगा हुआ है बिजली का उसमें तार खीची हुई है बाजू बीच में एक मैदान है।